ये एक दुकान है जहाँ पे एक नई गाड़ी खड़ी हुई है।

लोकल ग्राउंड का नहीं है जहाँ पे दो ऑटो भी है।

उधर ढका हुआ है उधर बहुत सारे प्लांट्स भी--

पिलर वाइट कलर की है नीचे का फर्श भी वाइट कलर का है।

और बहुत सारी बहुत सारे घर भी हैं।

दुकान है जिसके बोर्ड पे स्विमिंग --

इस चित्र में ये एक दुकान है जो लाइट की है।

कुर्सी स्किन कलर की है कुर्सी के टेके--

जहाँ पे बहुत सारे लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं।

और नीचे एक अंकल खड़े हैं जो व्हाइट टी-शर्ट पहने हैं उनके आये वाले उनके आगे वाले अंकल --

उसमें से एक मो थोड़ा मोटे हैं।

और अ कुछ लोगों के चेहरे ब्लर भी हैं।

और यहाँ पे रेलिंग भी लगी है सिल्वर कलर की --

ऊपर का आसमान सफेद या नीला कलर का है और बादल से थोड़ा घेरा हुआ है।

और साइड दीवार नीचे की दीवार फर्श सफेद कलर क --

कुछ स्लाइड छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं।

और उसके साइड वाले कलर पीला और ऑरेंज है।

कुछ जगहों पे घास है और कुछ जगह सूखी पड़ी हैं।

क्रीम्स जैसी चीजें मिलती हैं चेहरे पे लगाने वाली --

एक फ्रूटी की बोटल है ऑरेंज एंड वाइट कलर की --

इस जगह बहुत सारी राखियाँ हैं।

और बहुत सारे लोक भाग भी है यहाँ पे ऊपर --

ऊपर आसमान सफेद एंड ऑरेंज है।

और रेलिंग है देउ गेट की काली --

जिस पे इस्टॉप लिखा है वो लाल और सफेद कलर का है।

गेट भी नीले कलर का है गेट की जालियाँ --

हरी भी हैं लाल भी हैं और एक साइड में भैंस भी हैं।

अच्छी बॉडी वाले और यहाँ पे चट्टान है।

इस चित्र में ये एक स्विमिंग पूल है।

आसमान का कलर सफेद है हल्के हल्के बादल है।

और बैरिकेड्स भी हैं येलो कलर के --

आसमान नीला है और अच्छे बादल हो रहे हैं।

इस चित्र में ये एक घर है वाइट कलर का--